अम यहां पर एक ट्रेन है जो लोहे की ये छोटे बच्चों की --

और एक पहाड़ भी है वहाँ पर हरे भरे हुए हैं अ झाड़ों से भरा हुआ है।

और इसपे ऊपर अं लिखे वाला भी है लाल कलर से।

ये एक चार पाँच झाड़ा हैं हरे भरे।

यहाँ पे चकले रखे वाले हैं एक ये दुकान है।

एक झाड है यहां पे और एक कार भी है दुकान है दुकान में दो लड़के ठहरे हुए हैं।

और घर अ हैं सब हैं यहाँ पे।

यहाँ पर ये तो झाड़ा लगे वाले हैं।

अ झाड़ा हैं एक बैठने के सब है --

यहाँ पे एक दुकान का काम चल रहा है जिसमें काफी सारे लकड़ियां लगे हुए भी हैं।

यहां पर झाड़ा हैं हरे हरे रंग के।

और उसके पास दो साइकिल अ खड़े हैं एक आदमी चल रहा है।

जो एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी।

कांच व्हाईट कलर के हैं और एक गोल्डन कलर का है और एक बच्चा है एक औरत भी है।

यहाँ पर एक दो तीन हरे रंग के झाड़ा हैं।

फिर कांच के गिलास अ दिख रहे हैं डोर दिख रहा है।

यहाँ पर काफी सारे डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर काफी सारे झाड़ा नजर आ रहे हैं।

यहां पर काफी सारे लाइटा है पूरा से सजा वेला हैं।

यहाँ पर एक कार नजर आ रही है और एक आदमी उस कार को धो रहा है।

और कुछ मंदिर नजर आ रही हैं और कुछ औरतें खड़े हुए हैं वो नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर एक दुकान नजर आ रही है अ जिसमें--

बहोत सारे चीजें हैं। चूड़ियां वगैराह हर तरह चीजें नजर आ रही है।

यहाँ पर अ बहुत सारी किताबें नजर आ रही हैं।

फिर नीचे पलंग नजर आ रही है जिस पे बिस्तर लगे वाला है वह नजर आ रहा है डोर नजर आ रहा है।

और फिर आसमान नजर आ रहा है सूरज नजर आ रहा है जो डूब रहा है।

ये एक दुकान नजर आ रही है शटर बंद है वो नजर आ रहा है बिल्डिंग नजर आ रही है।

यहाँ पर कुछ अदमियाँ नजर आ रहे हैं।

और एक बैग भी है नीचे मैट है।

मिस उस पुतले के पीछे एक फ्रॉक है।

ये एक समंदर के सॉरी एक तालाब के बाहर तालाब की फोटो है जिसमें बड़ा सा तालाब है और एक पत्थर भी बड़ा सा पत्थर है।

इसमें काफी सारे दवाइयां वगैरह भी है।

लगी है वहाँ और एक वाशिंग मशीन दिख रही है बेसन दिख रहा है।